हाफ पेन्ट ट्रॉउज़र और भी कई तरह के कपड़े दिख रहे है इसमे कस्टमर जा कर इस कपड़े को खरीदेगें ।

इस मे एक मैदान दर्शाया गया है इस मैदान के ऊपर एक लड़की कुछ समान ले जा रहे ले जा रही हैं।